यख मा जी हैडफ़ोन भी छन रख्यां चश्मा भी छ रख्युं यख मा जी तार भी छन कुछ बिजली का यख मा जी एक अलमारी छा अलमारी पर अलग अलग खानों पर अलग अलग प्रकार कि किताब भी छन रखीं।

यख मा जी रंग बिरंगी ट्यूब लाइट छन लगी लाइट छन लगीं यख कई सारा लोग भी छन आयां यख मा जी एक तम्बू कर छन भी कुछ बण्या।

यख मजी डिजाइन भी छन कई बणाया यख एंचम रेलिंग बी छ रेलिंग मजी लुआ का पाइप भी छन लग्यां यु बोहोत ही पुराणी छ कोई।